यह एक नदी है। नदी में लोग बोटिंग करते हैं और कुछ लोग बोटिंग कर भी रहे हैं।

यह एक लाइब्रेरी है लाइब्रेरी में--

यह एक होस्टल है और यहां पर विद्यार्थी रेहते है।

यह एक शादी वाला स्टेज है जहां दूल्हा दुल्हन बैठकर जयमाला करते हैं।

और यहां पर सोफे रखे हुएं हैं।